इसके बाहर मुझे कलर का गेट भी नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे एक होटल नजर आ रहा है यहां पे बहुत सारी लाइट जली हुई है यहां पे मुझे एक स्कूटी भी नजर आ रही है और अंदर--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

इस तस्वीर में मुझे एक मिथिला बुक सेन्टर दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक स्कूटी और एक बाइक नज़र आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी बाइक्स के शोरूम नज़र आ रही हैं यहां पे कुछ लाइट्स जली हुई हैं और कुछ लोग मुझे सीढ़ियों पे बैठे नज़र आ रहे हैं।

यहां पे मुझे बहुत सारे लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है आसपास मुझे बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ियां भी दिखाई दे--